जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में एक मसालेपुरी का स्टॉल दिख रहा है।

और इस चित्र में जीसस का पोस्ट दिख रहा है।

कपड़ो का स्टाल है यहाँ दो गुड़ी को ड्रेसेस पेहना के शो पीस के तरह बाहर रखा हुआ है और दुसरे सारे ड्रेसेस को भी बाहर टंगा हुआ है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में यहां पे एक अ चेयर है जो पार्लर या हजाम की शॉप में यूज करते हैं।

इधर एक अ अंकल एक बैग लेकर बैठे हुए हैं और एक पैसेंजर रुक स खड़ा हुआ है।

और उस दुकान के आगे की ग्लास पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

एक आदमी वाइट रंग की टी-शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी क्रीम कलर का शर्ट पहना हुआ है।

बहत ज्यादि ईंटे पड़ी हुई हैं।

और दो लोग उन इंटो को जमा रहे है एक आदमी के आदमी के पानी गढ़ा है और रेत पडी हुई है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में ये एक रेलवे प्लेटफार्म दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में ये एक जगह में लकड़ी के बहत सारी चीजें इनको जमा किया है।

इस लड़कि के चीज़े मे बड़ेसी चाके दिख रहे है और एक बड़ा सा डिब्बा दिख रहा है एक टेबल फॅन दिख रहा है।

जहां पे एक एक तरफ कैमरा और लाइट का स्टैंड दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये इस चित्र में स्विमिंग पूल दिख रहा है।

चेयर्स रखे हुए हैं और अ पौधे भी हैं और झाड़ भी दिख रहे हैं।

हम् जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में एक हवाई जांच रुकी हुई है।

और उस घर के इमारत का रंग सफेद है।

सीढ़ियां दिख रही है और उस घर के आगे रास्ता है जहां पे का इमारत का रंग पिंक है।

वहा पे उसका नाम ताजि टोकरी बोलके लिखा हुआ है।

पे बहुत से लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

बहुत सारे लोग घूम रहे हैं उधर और एक आदमी अपना कपड़ों का बैग लगेज लेके आ रहा है उदा शर्ट पहना हुआ है।

उसमें एक अ काटे का चम्मच भी है और प्ले उस वाइट प्लेट के बाजू में एक मग में बियर दिख रहा है।

और सारा सब आसमान उदा रंग दिख रहा है।

और उसके पीछे इमारत पे और टेबल फैंस दीवार पे लँगे लगे हुए हैं।

लाइट ए जल रही है और बहुत सारी फैन ए दिख रही है।

और उन गाड़ियों के पीछे ए वाइट सी इमारत दिख रही है सफेद रंग की और एक बड़ा सा टावर दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में ये एक लैब दिख रहा है।

एक आदमी है लैब में और लैब के चीजें दिख रही हैं।

ऊपर पंखे दिख रहे है लाइट जल रही है।

नदी में ए दो से तीन जहाज दिख रहे हैं।

सूरज डूबता हुआ दिख रहा है और पानी के इस तरफ अ खमियां दिख रही हैं।

और मोमोस के प्लेट के पिक्चर उस पीले रंग के बोर्ड पे है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में एक हवाई जहाज रुकी हुई है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस चित्र में एक इमारत पे गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल के लिखा हुआ।

उस बस के पीछे चलने के लिए रास्ता है और उसके पीछे टू व्हीलर्स रुके हुए हैं।

आसमान दिख रहा है बहुत सारे पेड़ दिख रहे --